काफी खुबसूरत हैं। पत्थर बहुत मजबूत होते हैं। उनको बड़े ही आसान आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता काफी मेहनत लगती है। काफी मजबूत होते हैं।

काफी अच्छा बना हुआ है। गेट भी देखो के द्वारा बना है।

काफी बड़े ग्राउंड इनको तैयार किया जा रहा है। अब देखो किस तरीके से पांच सौ की पांच सौ का पा पाड़ बाँध रखी है।

ये सामने जो है केंद्रा बैंक है। केंद्रा बैंक में काफी अच्छी बैंक है। पैसे जमा करो इस--

बैंक में देखो ए.सी. भी लगी हुई है। सामने एक मोटर साईकिल खड़ी है।

पत्थरवे के डिजाईन से कटे हुए।